यहाँ कुछ जेहन सेहेन लड़-लड़के है।

ये एक पहाड़ी इलाका है जिसमें कुछ जगहों पर पत्थर दिखाई दे रहे है और कुछ जगहों पर पहाड़ी-पहाड़ी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए है इकट्ठे खड़े हुए है ए ऐसा लग रहा है जुलुस निकला जा रहा है किसी का | निकल रहा है।

और ये कुछ लिख रहे हैं शायद ड्राइंग कर रहे है इन पेपरों पर ये फाइले वैगरह है इनके हाथ में।

फर्स बिछा हुवा है साइड मे व्हाइट कलर का बिछा है येलो कलर की गाड़ी खड़ी हुई है।

फूल से बच्चे हैबच्चों ओं के पास सभी यूनिफॉर्म पहन रखी है सर् भी है इन बच्चों के ऊपर है इनके हाथों मे फावड़ा है जमीन को खोद

ये एक गणतंत्र द्वार है इस बहुत बड़ा इसके गणतंत्र द्वार के सामने बहुत बड़ा मैदान है।